यह एस_बी_आई बैंक है बैंक के नीचे तीन बाइक लगाया हुआ है।

जिसमें दो ब ब्लैक कलर का है एक रेड कलर का है। यहां पे दो लोग आए हुए हैं।

यह हॉल है हॉल है जो व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिसमें महिला जेंट्स दोनों हैं।

जो सेनूर देते हुए कोई दिख रही कोई सेनूर ली हुई है। हाथ प सब महिला के चूड़ी भी है।

पानी का रंग मिट्टी कलर का है थोड़ा गंदा वाला बहुत पुराना छलकी है।

उसपे ऊपर की ओर लोहा की रेलिंग किया गया है।

एक से दो बाइक है एक से दो साइंकल भी यहां पे लगाया गया है एक ए_सी वाला भी लगाया गया है जिसमें व्हाइट कलर ।

एक एल_इ_डी बोल लगाया हुआ है इहां पे दो स्विच लगाया गया है।

यह एक ग्राउंड है ग्राउंड पे बहोत सारे लोग आए हुए हैं।

ऊधर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं जिसमें पत्ते भी लगा हुआ है चार से पांच लोग भी हैं।

दो से तीन कुर्सियां हैं एक फूल का गमला भी लगाया हुआ है।

उपर पे एक एल_सी_डी लगाया हुआ है एक गेट है जो प्लाई का बनाकर लगया हुआ है डिजाइन वाला।